फूल ए सब से सजे है बहुत अच्छे सीढ़ी भी है डोंगा हे ।

शिव मंदीर के तलाव जइसे दिखथ हे बहुत सा पुरइन पान मन हवए इता सुन्दर--

आसपास मा हारा भरा पौधा हवे आउ आउ आउ एक ठन महल जाईसे हवे--

आउ पेड़ पौधा मन अऊ जारी वारी मन उखन गए हेअऊ सूर्य ढलत हे ।

पत्थर है जमीन है मिट्टी है गीला-गीला फर्श है असमान भी अच्छ--